एक बड़ा सा अमरूद का पेड़ है।

और लोटा भी इनके हाथ में है।

यहां पर एक बड़ा सा मॉल है इस मॉल में बहुत सारे कपड़े हैं।

कुछ महिला नीचे बैठकर एक्सरसाइज कर रही है।

और शीशे की दीवार है।

सोफे और परदे भी लगे हुए हैं।

यहां पर एक बड़ी ती मस्जिद है।

यहां पर बहोत सारे घर है और काफी बड़ा छत हैं।

और यहां सोफा भी लगा हुआ है।

यहां पर एक होटल है इस होटल में बड़ा सा टेबल है।

और इसके ऊपर एक आदमी काले रंग का जूता पहनकर खड़ा है।

बहुत सारे टेबल हैं सामने एक बड़ा सा बोरड लगा है।